और एक गारी ग्रीन कलर का गारी भी है।

वाइट वाला बैग में कोई कोई लोग के हैं।

ये पिक्चर में एक गाँव दिखाई दे रहा है।

बहुत सारा पत्ता से बनाया घर दिखाई दे रहा है बहुत सारा धीनार से बनाया घर भी दिखाई दे रहा है।

ये पिक्चर में बहुत बड़ा वाला नदी दिखाई दे रहा है।

और दो लड़का दोनो चलते हुए दिखाई दे रहा है।

और ड्रेस भी दिखाई दे रहा है ऐ_सी भी दिखाई दे रहा है।

वो सीलिंग जो है पूरा वाइट में है वॉल भी पूरा व्हाइट में है।

उसका आगे में एक लरका बहोत दूर में दिखाई दे रहा है काला करके।

तरफ में एक छोटा सा पेड़ भी दिखाई दे रहा है ग्रीन करके।

पूरा बुक पे दिखाई दे रहा है यहां राइट तरफ में ओ कंप्यूटर भी आईफोन वाला लोगो का दिखाई दे रहा है।

फ्लोर जो है पूरा ब्राऊन कलर का है दिवाल जो है व्हाइट कलर है।

ये पिक्चर में एक बैंक दिखाई दे रहा है जो की।

एच_डी_एफ_सी बैंक लिख के है पूरा वाइट कलर में ग्रीन वाला बोर्ड में।

टाटा मोटर लिख के ऊपर में है ब्लू वाला बोर्ड में ओ ऊपर में जो है पूरा आसमान करके पूरा वाइट करके सफेद करके दिखाई दे रहा है।

ओ पूरा छोटा छोटा लोहा भी दिखाई दे रहा हैं जिसको हैंगिंग कर रहा हैं उसके नीचे मे पानी भी जाते हुए दिखाई दे रहा हैं ग्रीन कलर में।

वो पत्थर है ब्राउन कलर में बहुत सारा दिखाई दे रहा है और उसका सामने में--

ये पिक्चर में तीन लोग दिखाई दे रहे है जोकि वो लोग अपना अपना बंदूक पकड़ के कुछ चीज को एम कर रहे है।

दीवाल से ले के सीलिंग से ले के हर चीज व्हाइट में दिखाई दे रहा है।

गाड़ी पे व्हाइट कलर का है और उसका सामने में एक ब्लैक कलर गाड़ी दिखाई दे रहे हैं ऊपर का वॉल जो है व्हाइट कलर का है।

बहुत सारा छोटा छोटा पानी छोटा छोटा बच्चा लोग खेलते हुए दिखाई दे रहा है।

वो लोग के पीछे में जो है यह पूरा बिना प्लास्टर वाला वॉल दिखाई दे रहा है।

पूरा लकड़ी से बनाया वाला रेस्टोरेंट है वह मिडिल वाला पिलर में एक फोटो चपका के है।

ये पिक्चर में एक रस्ता दिखाई दे रहा है जहां में तीन लड़का लोग रेस कर रहा है रनिंग रेस ।

जोकि तरह तरह का ग्रीन ग्रे ब्लू पूरा मिक्स कलर में बनाया वाला घर है।

ये पिक्चर बहोत सारा बच्चा लोग लोग जवान लोग दिखाई दे रहा है।

ये पिक्चर में एक दुकान दिखाई दे रहा है यहां में एक लड़का अपना दुकान मालिक बैठा हुआ है।

हॉल का वाल जो है पूरा व्हाइट एंड ब्राउन कलर में है।

और बहुत सारा रिंग भी दिखाई दे रहा है और बहुत सारा फ्लोर भी बहुत म्यूजिशियन दिखाई दे रहा है।

वो वो फेंसिंग जो है पूरा ब्राउन कलर का है।

और उसका पीछे में एक बहुत बड़ा ल येलो कलर का घर भी दिखाई दे रहा है।